पेड़ पौधों के आसपास छाव दिखाई दे रही है।

एक फंक्शन हो रहा है फंक्शन में महिलाएं बच्चे पुरूष आदि लोग बैठे हुए हैं।

पास में हरे भरे छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

घरों के आसपास कई सारे हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं।

गाड़ियों के पीछे एक खंभा लगा हुआ है जिसमें लाइटे लगी है।

एक गैलरी सी बनी हुई है गैलरी में साइड से कुछ मेजे पड़ी हुई है।

सामने एक किराने की दुकान रखी हुई है जिसके अंदर खाने पीने की वस्तु रखी है।

यह एक लड़की है लड़की कुछ काम कर रही है।

एक पुल बना हुआ है पुल के सामने एक बड़ा घर बना हुआ है।

एक ग्रोसरी की दुकान बनी हुई है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है।

एक व्यक्ति एक बीच वाली मूर्ति को छू रहा है।

मूर्ति के पीछे ऑरेंज और ग्रीन कलर का पेंट किया गया है।

फ्रिज के अंदर कई प्रकार की कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है।

कुछ आपस मे कई सारी चिमनियां हैं जिनके अंदर से धुआं निकल रहा है।

सड़क के आस पास एक बैरिकेटर कुछ लोग ऑटो और ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं।

कुछ हिस्सों पर खाली गीली मिट्टी दिखाई दे रही है।

पीछे एक मेला लगा हुआ है मेले में कई प्रकार के झूले लगे हुए हैं।

सामने ही मैदान पर एक ईंटों से गोल गोल चक्र सा बना हुआ है।